और बाजू में बहुत सारे घास दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है इस इमारत में बहुत सारे चित्र बने दिखाई दे रहे है।

यहां एक फंक्शन होता दिखाई दे रहा है पंचायत या कोई एलाउंस वगैरा जहां पर बहुत सारे--